रूम है जो की रूम मे एक बेड है और उसपे तकिये रखे हुए है और वाइट कलर का गद्दा है।

इसमें एक नई मशीन रखी है जो ल टेस्टिंग के लिए यूज हो रही है और --

इस इमेज मे ग्रीन माउंटेन्स दिखाई दे रहा है और कुछ ब्रांचे ऊपर से दिखाई दे रही हैं।

एक अ फोर जी स्मार्ट अ सिम के लिए एक शो रूम बना हुआ है जिसमे ट्रांसपेरेंट डोर --

और इसके बाहर येलो कलर का पेंट किया हुआ है डोर मेट डला हुआ है।

ये एक खेत की ईमेज़ है जिसमे झोपड़ी भी लगी है और पानी चल रहा है खेतों मे --

ये एक कच्ची पघ डंडी दिख रही है जिस में एक ट्रेक्टर जाता हुआ दिखी दे रहा है दो व्यक्ति बैठे हुए दिखा दी रहे है और थोड़ा पानी साइड में पानी भरा हुआ नजर आ रहा है खेत दिख रहा है और ठंड का मौसम जैसा लग रहा है।